एक आदमी खड़ा हुआ है और दो ग्राहक भी है जो की समान खरीद रहे हैं।

यह आदमी ट्रॉली के पीछे कुछ लिख रहा है।

उसी के नीचे फिर मिलेंगे भी लिखा हुआ है।

बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं एक तरफ।

गर्ल्स ने हाउस के अकॉर्डिंग टी शर्ट पहनी हुई है एवं स्कर्ट एवं पैंट --

यह एक पिक्चर है जिसमें की एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ --

जीसके पीछे एक पेड़ सा भी दिखाई पड़ रहा है।

यह एक पिक्चर है जिसमें की वॉल पर एक जिम करते हुए फोटो लग रही है।

बैल बैलून लगे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं।

कान्धे पर गमछा रखे हुए एक किताब पढ़ रहा है।

उसी के पीछे एक और आदमी भी खड़ा हुआ है जो कि उसी किताब में झांक रहा है।

और बाहर एक आदमी इनकी फोटो खींच रहा है।

उसी के पीछे एक और आदमी भी खड़ा हुआ है।

इनका कलर देखने में व्हाइट या सिल्वर है।

उसी के बराबर में एक और आदमी भी खड़ा है।

जिस पर नई चेयर्स भी रखी हुई हैं जिस पर कवर्स भी चढ़े हुए हैं।

और अलग अलग तरीके के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी यहां पर रखे हुए हैं।

पीछे का मौसम साइकाल का नजर आ रहा है।

द बॉडी लैब जिम पर लाइट लगी हुई हैं जोकि जल रही हैं।

व्हाइट कलर का टी शर्ट एवं लोअर पहने हुए है।

यह एक पिक्चर है जिसमें कि जिम देख सकते हैं।

यह मच्छियां कुछ बड़ी तो कुछ छोटी है।

झूले का ऊपर का पाइप काला एवं बराबर का पाइप का रंग पीला है।

क्लासिक जिम लिखा हुआ है और पीछे लाइट लगी हुई है।

यहां पर दो आदमी ए_टी_एम से पैसे निकाल एवं जमा कर रहे हैं।

और पीछे भी कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

बराबर में दो आदमी भी जान जा रहे हैं।

यह पेड़ सीधे के कतार में लगे हुए--

बराबर में भी दिए अ एवं अलग अलग तरीके का पोस्टर ये रखे हुए हैं।

एक चेयर और उसी के सामने दो दो चेयर रखी हुई है।

चेयर का रंग काला एवं टेबल का रंग व्हाइट है।

लड़कों ने सिर पर टोपी तो लड़कियों ने सिर पर दुपट्टा रखा हुआ--

एक बड़ी सी एल_ई_डी भी लगी हुई है।